जहाँ पर्र लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कॉपी किताबें ढ़ेर सारी रखी हुई हैं।

और यहाँ पर ऊपर की तरफ मूर्तियाँ बनी हुई हैंकुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जो कि हाथ मे सामान भी पकड़े हुए हैं ऊपर बादल दिख रहा--

एक क्लास रूम का पिक्चर है जहां पर वुडन की टेबल चेयर पड़ी हुई है और एक वाइट कलर की चेयर रेड कलर की चेयर है।

पीछे की तरफ दो खिड़कियां हैं और एक फैन लगा हुआ है एक रड और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहाँ पर लाइट्स भी जल रही हैं और सामने कि तरफ एक काउंटर बना हुआ हैं कुछ लोग यहाँ पर बैठा हुए हैं।

ये एक बड़ी सी नदी का पिक्चर है जहाँ पर एक बोट में कई लोग बैठे हुए हैं।

और साइड मे मशीन भी लगी हुई है और ये लोग जहाँ पर खड़े है वो लाइट ब्लु कलर का पेंट है।

ये चर्च के बाहर का पिच्चर है। ऊपर सबसे टॉप पर क्रॉस का निशान भी बना हुआ है। यहां पर व्हाइट और ब्लू कलर के बैलून से सजावट की गई है।

ये एक बड़े से ग्राउंड का पिक्चर है जहाँ पीछे की तरफ ट्रक खड़ा हुआ है।

ये एक स्टेज पर डाँस हो रहा है। वहां पर पीछे की तरफ एक लड़की फ्लैग लिए खड़ी है।